जिनके कलर ग्रीन ब्राउन ब्लू और येलो कलर के हैं।

फोटो में हमें राइट साइड में एक बिल्डिंग दिख रही है।

और डेस्क के आगे एक ग्रे कलर की रोटेटिंग चेयर भी लगी हुई है।

इस चेयर के ऊपर हम देख सकते हैं डेस्क पर छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं।

और इस छत के उपर एक अलग रूम भी है और हमे दूर तक खुला आसमान दिख रहा है।

इस फोटो में हमें दो शेड दिख रहे हैं एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड राइट साइड जो शेड है उसके आसपास ब्लू कलर के हमें कवरिंग दिख रहे हैं।

और इसके आ आगे पीछे हरे बड़े पेड़ भी हमें दिख रहे हैं।

एक पूजा स्थल जैसा दिख रहा है जिसके आगे कुछ लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे है और आगे जा रहे हैं।

और उसके आगे एक छोटा सा तालाब है।

इस फोटो में हमें बहोत सारे बच्चे लाइन से एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं।

और उसके आगे हमें बड़े पेड़ के तने जिनको काट दिया गया है वो दिख रहे हैं।

हमें एक और इंसान दिख रहा है जिसने ग्रे कलर की टी शर्ट और पेंट्स पहनी हुई --

जिसके नीचे ॐ शं शंकराय नमः लिखा दिख रहा है लाल से।

और इसके ऊपर एक सिल्वर से एक मटका बनाया हुआ है जिससे इसपे दूध गिर रहा है।

शिवलिंग के आस पास सिल्वर से फेंस भी बनाई हुई है और इसके आस पास बड़े हरे पेड़ भी हैं।

इस फोटो में हमें एक रोड दिख रहा है जिस पे कुछ गाड़िया चल रही है और राइट साइड में एक इंसान स्कूटी चला रहा है।

लेफ्ट साइड में हमें दुकाने दिख रही हैं जिन पे बहोत सारे कपड़े मच्छरदानी और अलग अलग चीजे लगी हुई हैं।

जिसमें बीच में एक देवी मां सितार पकड़े बैठी--

इस फोटो में हमें एक ज्वेलरी शॉप दिखाई गई है जहां पे लेफ्ट साइड में एक मॉडल ने ज्वेलरी पहनी हुई है।

और सोफे पर हमें कुसन दिख रहे है जो येलो ब्लू कलर के है।

इस रूम में हमें खिड़कियां भी दिख रही हैं दो जिनपे परदे लगे हुए हैं।

लेफ्ट साइड में एक गार्डन हैं जिसके आसपास छोटे पेड़ हैं।

हमें एक मंदिर दिखाया हुआ है जिसके व्हाइट टाइल्स है।

फोटो में हमें चार रोज दिखाई गई है जिनपे बहोत सारे नमकीन रखे हुए हैं।

घर के अलग अलग रूमों के आगे ए_सी के आउटलेट्स लगे हुए हैं।

इन्होंने व्हाइट कलर की ब्लू स्ट्राइप्ड साड़ी पहनी हुई है।

और पीछे हमें ए एक मदर मेरी का आइडल भी दिख रहा है।

हमें खुला आसमान भी दिख रहा है और क्षितिज की रेखा भी दिख रही है और आसमान में बादल सफेद है।

इस फोटो में हमे एक गेट दिख रहा है जो खुला हुआ है और इसके ऊपर एक साइन बना हुआ है जिसपे एलेवेन वुल्फ लिखा हुआ है इंग्लिश में।

इस फोटो में हमे एक दीवाल दिख रही है जिसपर बहोत सारी फोटोज साथ में कोलाज बनाके दिखाई हुई है।

इस फोटो के कोलाज में हमें बहुत सारे लोग एक अअ इंसान को अवार्ड देते दिख रहे हैं।

ये जो रूम है ये रूम के ऊपर इस दीवार की तरफ पॉइंट करते हुए एक लाइट भी लगाइ है और इस रूम की दीवारें सफेद कलर की है।

इस फोटो में हमे एक दुकान दिख रही है जिसके ऊपर ब्ल्यू कलर का बैनर जिओ डिजिटल लाइफ का लगा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक ग्राउंड दिख रहा है जिस पे हमें अलग अलग तरह की गाड़ियां दिख --

और यहां पे हमें एक औरत भी दिख रही है जिसने येलो कलर का सूट पहना हुआ है और पीछे हमें कुछ पहाड़ और हरे भरे पेड़ भी दिख रहे हैं।

जहां पर लोग बैठते हैं इस शेड एरिया के आसपास हमें पिलर लगाए दिख रहे हैं।

इन हट के आगे एक रास्ता भी दिख रहा है जो सीधा जा रहा है।